इस चित्र में यहां पर एक झोला दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे ब्रेक डांस वाले झूले--

और एक मौत का कुआं का भी लगा हुआ है।

और कुछ पेपर किताबें भी दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में यह एक बैरीकेडिंग बना रखा है जिसमें लाल पट्टी और स्टील के पाइप है।

और एक थमला है बीच में जिस पर कान्हा जी की तस्वीर है।

और बहोत सारे पत्थर नीचे दिखाई दे रहे हैं गिरे हुए है।

इस चित्र में यह एक नाई की दुकान है जिसमे पीला कलर किया गया है।

और दो शीशे लगे हुए हैं और बहुत सारी कुर्सियां है अंदर लोहे की कुछ कपड़े टंगे हुए हैं तौलिए --

एक छोटा हाथी है जिसमे समान है बहुत सारा।

बैनर लगा हुआ है योग का।